और गाड़ी पे आदमी बैठे और आदमी नीचे भी खड़े हैं और झोपड़ी भी है साइड में।

और एक छत में पंखा भी लग रहा है।

जिसमें एक आदमी अंदर बैठा है और एक आदमी बाहर बैठा है।

और मेज प जूते भी धरे हैं।

लेडीज परस और जुते हैं सैंडील हैं।

यह एक शोरूम है बहोत ही बड़ा कपड़ों का जिसमें किसी तरह के कपड़े ले सकते हो आप।

आगे इनमें शाम को इसमें एक दरवाजा लग रहा जी--

और साइड वाले में हैं कुछ और बोर्ड ऊपर भी नीचे भी।

और गेट में आदमी भी जा रहे हैं कुछ ए_सी भी लग रही हैं कमरे में और एक पंखा भी है।

और नीचे ट्रेन भी जा रही है इस--

ये है एक बहोत ही अच्छा कमरा है।